इस दुकान में सजावट हो रखी है।

तस्वीर में बहोत सजावट हुई हुई है।

इस तस्वीर में हमें बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है।